शोफा लगाया हुआ है । जिसपे दूल्हा दुल्हन बैठती है । यहाँ पे कैमरा है । इससे विडियो बनाया जाता है । शादी के विडियोग्राफर --

देखते हैं एस.बी.आई. यहाँ स्टेट बैंक लिखा हुआ है एस.बी.आई. का स्टेट बैंक सीतामढ़ी --

खरीद रहे हैं लोग यहाँ मछली।

अभी कोई नही है सिर्फ गुल्दास्ते के फूल के पेड़ लगे लगे हुए है।

ट्रैक्टर के टायर यहाँ पे बस के टायर भी मिलते होंगे दस हज़ार बारह हज़ार से ऊपर का आता है।

और यहाँ टेबल खाड़ी है एक आदमी खड़ा है रिसेप्शन पे ये बहुत सुंदर चारों तरफ से डेकोरेशन किया हुआ शीशे शोफा लगे हुए हैं ये बहुत अच्छा और सुंदर है इसके आस-पास टाइल लगे हुए हैं ऊपर भी डेकोरेशन किया हुआ है|